बाहर एक व्यक्ति भी नज़र आ रहे है सामने कुछ गमले दिख रहे है।

यहां पर कुछ व्यक्ति सर्वे का काम करते--

एक नीले रंग की स्कूटी भी नजर आ रही हैं।

और यहां पर काफी सारे फूल दिख रहे हैं।

जहां पर काफी कुर्सियां नजर आ रही है ऊपर कुछ पंखे भी --